सामने में एक दुकान दिख रही है।

और एक सामने फैक्ट्री दिख रही है जो कि व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

सामने में एक फैक्ट्री दिख रही है।

जिसमें तीन आदमी खड़े हैं।

पोस्टर और पीला कलर का ढक्कन लगा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे आदमी खड़ा हैं।

पेड़ के बगल में एक छोटा सा घर दिख रहा--

सामने में एक रूम दिख रहा है।

नीचे में टाइल्स लगा हुआ है।

इंग्लिश बाथरूम में पन्नी लगा डाला हुआ हैं।

सामने में बहुत सारी महिला दिख रही हैं।

और वह सब हाथ में मोमबत्ती ली हुई हैं।

घर में तीन गेट दिख रहा है।

दुकान में बहुत सारा रिंच टंगा हुआ है।

दुकान के दो तरफ पोस्टर लगा हुआ है।